आयरन भी है सीसा मे रखा हुआ है लाइटें जल रहा है यहाँ पे आदमी भी है ।

रेड कलर का स्कूटी लगा हुआ है टोटो का भी शोरूम है दिवाले पर फूल --

माइ टी.वी.एस. कार जीप लगा हुआ है।

ये बाल्ट यहाँ पर फुवारे रखा हुआ है वहाँ पर कलर करने वाला रखा हुआ लाइटे जल रही है कुर्सियाँ --

हॉस्पिटल है हॉस्पिटल पीला कलर से पेंट किया हुआ है ग्रिल लोहा लगा हुआ है छत पे बड़ा-बड़ा पेड़े है फूलें हैं।

का बड़ा सा मूर्ति है वहाँ पे सभी भगवान की मूर्ति है वहाँ पे कलसा बैठाया हुआ है पंडी जी है बहुत सारे।

नार्थे पे बैठे हुए और रेड कलर के पंडाल बरन्ना हुआ है।

भीड़ लगा हुआ हैं वहाँ पे बड़े-बड़े खिड़की हैशीशा --

बहुत सुन्दर-सुन्दर रंग-बिरंगे झूले है यहाँ पे बहुत से --

गेटे है लाइटे लगा हुआ है ए.सी. या लगा हुआ है ।

टेबल पे सोर्स रखा हुआ है पंखे चल रहा लाइटे जल रहा।

सुन्दर अंगूर है बुहत सारे अंगूर हैं।

ये जो बगल मे पहाड़ी है ।

वहाँ पे पुराना कंपनी है उसका पि पानी का टंकी रख लाइनें का तार

तरफ बाउंड्री किया हुआ है वहाँ पे हरा-भरा पेड़े है आसमाने --

की टंकी लगा हुआ है सामने एक घर बन रहा है बहुत सारे फूलों के पेड़े हैं।

एक झील है उ झील में पानी ग्रीन कलर के उस पर हरा --

ऊपर में है यहाँ पे गमले में फूल रखा हुआ है बड़ा-बड़ा |

एक बड़ा सा हॉल है हॉल में --

कुर्सियाँ लगाया हुआ है | वहाँ पे सीसा के सामने गिटी है | पंखे लगा हुआ है | लाइटे --

वहां पे बहुत सारे समाने है स्कूटी लगा हुआ है वहां पे पोस्टर लगा हुआ है बहुत सारा ग्रिल लगा उसके बगल में हरा-हरा --

ठहरा है उसके बगल मे तीन गो डौगी सोया हुआ है | वहाँ पे --

पिंक कलर बैगनी कलर व्हाइट कलर --